इस तस्वीर में काफी बड़ा सुंदर नजर आ रहा है इसके पीछे किस्ती है किस्ती में कुछ सामान रखा हुआ--

एस्ट्रिजेंट खाली है जिनमें कोई है लाइटिंग भी ऑन है दीवार पे कुछ--

इस तस्वीर में इस तस्वीर में मुझे दो बड़ी बसे नजर आ रही है जो ग्रीन कलर की है।

उसपे कलेवर लिखा हुआ है और उसके आसपास दो तीन आदमी भी खड़े हैं एक आ बस के आगे सीढ़ी लगी हुई है।

और उसके पास अह काफी काफी मिट्टी लगी हुई है।

ये एक रेस्टोरेंट का व्यू है जहां पे एक बहोत बड़ा टेबल लगा हुआ है और चेयर्स लगी है बहोत सारी--

कुछ जो आदमी है वो अ जगराते की तैयारी कर रहे हैं।

गेट बन रहा है आगे वायरिंग की तार भी लगे हुए सब बन रहा--

और एक प्रभु की मूर्ति पड़ी हुई है उसके ऊपर भी सिर पे ताज है।

और कुछ नौकर इसको सेट करते नजर आ रहे हैं कुछ लोग चलते फिरते नजर आ रहे है खाते नजर आरे--

कमजोर के लाली जीब पे दादरपुर जा ग्रपेस

यह तस्वीर का बड़े महल की लग रही है जो सारा का व्हाइट रंग के पेंट --